एक व्यक्ति पिछले हिस्से मे रंगाई का मरम्मत कर रहा है।

बाग में कई लोग भी दिख रहे हैं।

इस हिल पर दाएं तरफ एक पहाड़ पर एक गांव बसा है।

मंदिर के आस पर एक सर्फेस दिवार बनी है जो रक्षा और सीमा दर्शाती है।

गेट के आसपास एक शेर की मूर्ति रखी गई--

नीचे पहाड़ी नदी का पानी तेज अं गति से बह रहा है जो इसका माहौल और सुंदर बनाता है।

डाइनिंग टेबल पर लाल और काले रंग का कुर्सियां दिखनी है।

पीछे कई मकान और बिल्डिंग दिख रहे हैं जो बताता है कि ये पार्क किसी शेर शहरी एरिया में--

यह इससे एक चमकदार और अलग पहचान देता है।

सड़क के किनारे छोटी घास और छोटी झाड़ियां हैं।

सामने दीवार पर एक पुरानी दीवार घड़ी लगी है।

के लिए खाली और भूरी कुर्सियां रखी गई हैं जिसमें लोग बैठकर अपने बाल कटवा रहे हैं।

सामने की दीवारों पर गोल दरवाजा बने हैं जो मुगल या राजपूत सभी के देती हैं।

दीवारें और छत बैंबू और ले से बनी हैं।

एक लाइन में बैठे हैं और ध्यान से किसी को सुन रहे हैं।

टेबल पे नोटबुक वॉटर बॉटल और कुछ मेकअप आइटम्स भी रखे है दिखा दिखाई दे रहे हैं।

हर ब्रैंड्स के बोतल रखी है।

दुकान में ब्ल्यू और ग्रीन लाइट्स लगी हैं जो इस जगह को एक अलग रौशनी दे रही हैं।

के पास हरा भरा छोटा तलाब है।

एंट्रेंस के ऊपर एक बोर्ड लगा है जिसमें शायद संस्था या चर्च का नाम लिखा है।

ऑरेंज रंग के कपड़े रेलिंग पर सुखाया गया हैं।

के नीचे का हिस्सा खुला है।

पेंट के डब्बो के पास ग्रीन और व्हाइट कलर के बैग्स रखे हैं।